जमीन पर हल्की हल्की घास उग रही है और मिट्टी भी पड़ी हुई है।

सामने एक दुकान बनी हुई है दुकान के आसपास घर बने हुए हैं।

दुकान के ऊपर संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है।

उन घर के बाहर एक ठेला ले जाता हुआ व्यक्ति जा रहा है।

नदी में एक नाव भी नजर आ रही है नदी के किनारे कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

कूड़ा इत्यादि पड़ा हुआ है दीवारों के ऊपर छोटे छोटे पेड़ उगे हुए हैं।

पीछे कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं पेड़ पौधे हरे भरे हैं।

मूर्तियां एक स्टेज के ऊपर रखी हुई है लोग जमीन पर खड़े हुए हैं।

लोग अपनी अलग अलग पोशाक पहने खड़े होकर फोटो खींचा रहे हैं।

मंदिर के आसपास खंबे लगे हुए हैं खंभे के ऊपर लाइटें व तारे लगी हुई है।

ट्रक के ऊपर निर्माता वरदान इत्यादि शब्द लिखे हुए हैं।

लोहे का एक गेट लगा हुआ है जिसके ऊपर डिजाइन दार गुलाबी रंग से चक्र बने हुए हैं।

जिसमें से दो लोग खाकी कपड़े पहने पेड़ के पास खड़े हुए हैं।

सामने एक थंबला बना हुआ है थंबले के ऊपर लाल कलर का पेंट किया गया है।

दुकान के बाहर एक भट्टी व सिलेंडर और कड़ाही रखी हुई है।

सामने एक ट्रक खड़ा हुआ है ट्रक के पास जमीन पर कट्टे के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

पेड़ पौधों के आसपास भूसा इत्यादि समान रखा है।

उनके ऊपर कृष्णा आई_वी_एफ फर्टिलिटी सेंटर लिखा हुआ है।

मैदान में कई सारे बच्चे खेल रहे हैं कुछ बच्चे आपस में बातचीत भी कर रहे हैं।

एक घर बना हुआ है घर के बाहर लोहे की रेलिंग लगी हुई हैं।

केस में नीले कलर की लाइट जल रही है।

पीले रंग के घर के पास एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

घरों की छत की बाउंड्री के बाहर काले रंग का प्रयोग किया गया है।

और गमले रखे हुए हैं। गमलो के पास एक लोहे के स्टैंड का बोर्ड लगा हुआ है।

कमरे में सफेद कलर की लाइट जल रही है कमरे में एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है।

यह एक शोभायात्रा निकल रही है जो ट्रैक्टर के ऊपर निकल रही है।

जिसका नाम ब्लशिंगटन मेकअप एंड ब्यूटी सलून है।

एक बड़ा सा हाल बना हुआ है जिसके ऊपर लोहे की शेड पड़ी हुई है।